यहाँ पर हमलोगो को एक स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर बहुत सारी पेड़े लगी हुई दिखाई दे रहे है | वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है --

ऊपर व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए है।

इस इमेज में हम लोगो को गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये लक-लड़का एक साइकिल दिखाई दे रही है |

इस इमेज में हमरे को एक रिक्शा दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर चारो तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है बंगला दिखाई दे रहे है और --

और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे स प स बहुत सारी पेड़े दिखाई दे रहे हैं पत्थर दिखाई दे रहे हैं व नीले कलर का --